इस दृश्य में कांच के अन्दर पे सैलून की दूकान बताया गया है सैलून की दूकान को बहुत ही रोलो आरोचक तरीके से सजाया गया है लाइट लगाई गई है।

ये बहुत ही रोमांचक वातावरण है तालाब बताया गया है तालाब के आजू बाजू मे पहाड़ बताया गया है खुला मैदान बताया गया है।

इस समुन्दर के आजु बाजु में कुछ नाव दिख रहे है कुछ मैदान दिख रहा है।

ये सेंटल बैंक का नजरिया बताया गया है बैंक के सामने पीले और हरे कलर का पेंट किआ गया है।

यह गंगा बुक डिपो बोरवेल बताया गया है अ यह बुक डिपो में बोरवल के साथ में बुक भी बेचीं जा रही --